ये बहुत बड़ा एक कोई इंटर कॉलेज सा है और चारो तरफ से वाईट कलर का भी है और गोल्डन कलर का भी है।